ऊपर बहोत सी लाइटे लगाई गई हैं।

और सामने ही एक वाइट कलर की पल्ली टंगि हुई है।

इस तस्वीर में एक लेडिस बैठी हुई है जो मछलियां बेच रही है।

जैसे कुछ व्हाइट कलर के टॉयलेट रखे हुए है।

इस तस्वीर में सामने ही एक फलों के ठेले को दिखाया गया है जिसमें सामने बहोत से फल रखे हुए हैं।

और बहुत से कांच के शीशे लगाए गए है जो ब्लैक कलर के है घर के बाहर--

स्लैब के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

जो व्हाइट कलर की है और कुछ गमले रखे हुए हैं।